यहाँ पे उस पर से लादाता है।

यहाँ किताब कॉपी का दुकान है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है|